यह घर बोहोत ही बड़ा दिखाई दे रहे है। इसके चेयर पर एक लड़का बैठा हुआ है जो कि शूज भी पेहने हुए है। हाथ में घड़ी पेहने हुए है। यह घर बहुत बड़ा है बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे है।